एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक आदमी फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है उसके ठीक सामने पेड़ नजर आ रही है।

एक परदा भी दिखाई दे रहा है यहां कुछ बालूये भी दिखाई दे रही है पीछे एक घर बनते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत ज्यादा कपड़ा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

घर का रंग लाल रंग से रंगा गया है।

ऊपर छोटे छोटे घास जैसी बना हुई--

इस बिल्डिंग के पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रही हैं।

आसमान रंग साफ दिख रहा है।

एक पोस्टर भी है जिसमें फोटोकॉपी जेरॉक्स लिखा हुआ है।

एक क्रिकेट का मैदान है जिसमें कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं।

यहां पानी ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

यह एक नर्सरी हाउस है जिसमें गमले में छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ भगवान की मूर्ति नजर आ रही है।

यह एक सब्जी की दुकान है जिसमें एक औरत सब्जी बेचते हुए दिखाई दे रही है।

एक दुकान है जिसके बाहर गुड वाइव्स ओनली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।